synaptic package manager को कैसे प्रयोग करें के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे
synaptic package manager प्रयोग करके boss लिनक्स 342 में एप्लीकेशन्स संस्थापित करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
boss linux 342 जीनोम gnome एन्वाइरन्मेन्ट डेस्कटॉप के साथ
आपको synaptic package manager प्रयोग करने के लिए प्रशासनिक अधिकार की ज़रुरत पड़ेगी
आपके पास कार्यकारी/working internet connection भी होना चाहिए
अतः पहले synaptic package manager खोलते हैं
अब मैं window minimize करती you आप यहाँ boss desktop let सकते हैं
अब application system tools administration पर जाएँ
और फिर synaptic package manager पर click करें
अब एक ऑथेन्टकैशन dialog box दिखता है जो admin password पूछता है
अब admin password type करें और enter दबाएं
जब हम पहली बार synaptic package manager प्रयोग करते हैं तो एक introduction dialog box दिखता है
यह dialog box जानकारी रखता है कि synaptic package manager कैसे प्रयोग करते हैं
अगर आप proxy network के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं तो एक application या package के संस्थापन के लिए synaptic package manager में proxy को configure करें
नहीं तो आप इन proxy कॉन्फ़िगरेशन setting को छोड़ सकते हैं
ऐसा करने के लिए synaptic package manager window खोलते हैं
अब setting पर जाते हैं और preferences पर click करते हैं
preferences window पर अनेक tabs हैं
proxy settings को configure करने के लिए network टैब पर click करें
proxy server में दो विकल्प हैं direct connection to the internet और
manual proxy configuration
जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मैं manual proxy configuration उपयोग कर रही हूँ
आप अपनी वरीयता का विकल्प चुन सकते हैं और authentication button पर click करें
screen पर http authentication window दिखती है
अगर आवश्यक हो तो यूज़रनेम और password प्रविष्ट करें और ok पर click करें
बदलावों को लागू करने के लिए apply पर click करें
फिर window बंद करने के लिए ok पर click करें
इस tool का प्रयोग सीखने के लिए उदाहरणस्वरुप अब मैं vlc player संस्थापित करुँगी
अगर आप synaptic package manager पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको package दोबारा लोड करने की ज़रुरत है
ऐसा करने के लिए tool bar पर reload button पर click करें
यह कुछ सेकण्ड्स ले सकता है
यहाँ हम देख सकते हैं कि packages को internet से स्थानांतरित किया जा रहा है और वह अपडेट किये जा रहे हैं
एक bar जब लोडिंग पूरी हो जाती है तो quick search box पर जाएँ जो tool bar में है और type करें vlc
यहाँ हम देख सकते हैं कि सारे packages सूचीबद्ध हुए हैं
packages के आगे वाले check box पर click करें
अब प्रदर्शित menu bar से mark for installation विकल्प चुनें
एक dialog box दिखता है जो packages के संग्रह की सूची दिखा रहा है
सारी निर्भरताओं को स्वतः चुनने के लिए mark button पर click करें
tool bar पर जाएँ और apply button पर click करें
window दिखती है जो संस्थापित किये जाने वाले packages के विवरण को दिखा रही है
संस्थापन शुरू करने के लिए apply button पर click करें
संस्थापन का समय संस्थापित किये जाने वाले packages की संख्या और size पर निर्भर करता है
जैसे ही संस्थापन पूरा हो जाता है downloading package file window बंद हो जाएगी
हम देख सकते हैं कि अब vlc संस्थापित हो गया है
synaptic package manager window बंद करें
अब जाँचते हैं कि हमारी machine पर vlc player सफलतापूर्वक संस्थापित हुआ है या नहीं
अब मैं screen को minimize करती हूँ इसके लिए applications sound & video पर जाते हैं
यहाँ हम देख सकते हैं कि vlc media player सूचीबद्ध हुआ है
इसका मतलब है vlc सफलतापूर्वक संस्थापित किया गया है
उसी प्रकार synaptic package manager प्रयोग करके हम अन्य applications संस्थापित कर सकते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
synaptic package manager में proxy configure करना
synaptic package manager प्रयोग करके एक application या package को संस्थापित करना
दर्शाये link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है
आप इसे download करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team tests और कार्यशालाओं का संचालन करती है विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एम एच आर डी के nmeict के द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है
इस tutorial की script का योगदान spoken tutorial team के द्वारा दिया गया है